वो लड़की है जो एक्सरसाइज कर रही है।

एक्सरसाइज का मशीन सब है। उसके बाद दो तीन मशीन है घर है उसके बाद --

बहुत सारा कमरा हैं एक आदमी है।

बहुत सारा मतलब आ जेंट्स है और जिम का मशीन सब है। एक आदमी सेल्फी ले रहा है दो आदमी एक आदमी बैठा हुआ है एक आदमी बता रहा है। जिम का म --